यहां पे मुझे ग्राउंड नजर आ रहा ग्राउंड में बहुत सारे लोग नजर आ रहा जो खड़े हैं।

ये कुछ नजर आ रहे छोटे छोटे झाड़ियां नजर आ रहे छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे।